पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें नीला और आसमानी काला पैं पेंट और गाडी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की --

दिखाई दे रहा है जड तिन जड दिखई दे रहे है व्हाइट दिखाई दे रहा है।

पूल दिखाई दे रहा है काले कलर का जिसमे बहुत सारे पूल के ऊपर से झाक रहे जिसमे आसमानी कलर के कपड़े पहेन--

ये सूरज ढल रहा है बादल नजर आ रहे है जिसमे वाइट ऑरेंज लाइन दिख रही है।

तार दिखाई दे रहा-- एक दो तीन चार पांच और रेत दिखाई दे रही-- पीली हरी झाड़ दिखाई दे रही--

एक व्यक्ति बैठा नज़र आ रहा है और हरे कलर का कुछ लगा है खिड़की नज़र आ रही है।

दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान फिरोजी व्हाइट कलर का एकदो तीन चार पांच --